यहां पर रैक में बहुत सारा सामान रखा हुआ है।

साथ में एक खिड़की भी हैफर्श का रंग मैरून है।

और नीचे फर्श पर लाल रंग का कुछ बिछा हुआ है।

यह एक गहना है जिसमें गले का हार है दो झुमके हैं।

और यहां पर छोटे-छोटे पौधे भी लगे हुए हैं बड़े-बड़े पेड़ भी लगे हुए हैं।

यह घर थोड़ा हरे सफेद और नीले रंग का है।

जो कि गुलाबी सफेद और हल्का नीला रंग लिए हुए हैं और बाहर बहोत बड़ा घना जंगल है।

और काउंटर के ऊपर ब्लू कलर का राउंड सा बना हुआ है।

एयरटेल फोर जी वोडाफोन बुकवर्ड वोडाफोन --

एक लाल पीले रंग का बोर्ड लगा हुआ है जिस पर पंजाब नेशनल बैंक लिखा है।

साथ में बहुत ऊपर घर बने हुए हैं।

यह एक गली है सामने एक गाड़ी खड़ी है उसके सामने कुछ लोग खड़े हैं।

जैसे कुछ बुक्स वगैरा और कुछ फोटोस --

और लड़ियां लटकी हुई है जो कि दीपक के आकार की है।

एक आदमी स्कूटी पर पीछे आ रहा है।

इन्होंने लाल गुलाबी कपड़े पहने हुए हैं।

एक लड़का बैठा है जिसे दो महिलाओं ने पकड़ रखा है।

उसके पीछे एक ऑटो और है और पीछे बहुमंजिला इमारतें हैं।

लड़के ने धोती कुर्ता पहना हुआ है शॉर्ट कुर्ता पहना हुआ है।

दो आदमी खड़े हैं शायद वो कुछ खरीद रहे हैं।

इसके ऊपर कांच की खिड़कियां लगी हुई हैं।

और सामने बहुत बड़ा दरवाजा है आसपास सूरज के स्टैचूज लगे हुए हैं।

लड़की भी कुछ काम कर रही है।